माउस कीबोर्ड है और एक कबर्ड के ऊपर काफी सारी फाइल और एक सेलो टेप है।

उसके ऊपर पर्दे लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेशन किया जा रहा है।